इस चित्र में हमें बेड बनाने वाला खाचा दिखाई दे रहा है जो बना हुआ नहीं है पूरी तरह से लोहे का दीप बना हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें चार कार दिखाई दे रही है एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें अगरबत्ती दिखाई दे रही है मोमबत्ती दिखाई दे रही है।

पेड़ दिखाई दे रहा है घना सा आसमान दिखाई दे रहा है।

और ये बोरी दिखाई दे रही है और जिसमें यह रखा गया है वो लकड़ी का बना हुआ है।